कमरे कि दीवारों का रंग पिला और हल्का सा सफेद है।

जिन्होंने विभिन रंगो के वस्त्र पहन रखे हुए हैं।

पहाड़ के अंदर बहुत सारी बड़ी - बड़ी दिवाले खड़ी हुई है।

और उन पोस्टरों का रंग नीला और सफेद है इमारत के बाहर वाहन भी खड़े हुए है बहुत स --

जिनका रंग लाल और काला दिखाई दे--